इस पर सफेद कलर का पेंट हो रखा है।

यह एक बहुत सुंदर कार रिपेयरिंग सेंटर है।

जिस पार्क में बहोत सुंदर पेड़ पौधे खड़े हुए हैं अ--

और नीचे पीले रंग की चटाई बिछी हुई है।

साइड में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

और एक सोफा बनाया हुआ है।

और साइड में हरे भरे वृक्ष में दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बहुत सुंदर दुकान है।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

और यहां पर अलग अलग प्रकार की बहुत सी कुर्सियां रखी हुई हैं।

यह एक बहुत सुंदर ऑफिस है।

और इसके छत में लाइट लगी हुई है।

घर के अंदर एक महिला बैठी हुई है।